यह कोचिंग है बहुत सारे बेंच है एक कुर्सी है और एक ट्यूब लाइट है और बहुत सारे पंखे है व दीवाल व्हाइट कलर के है दो खिड़किया है।

--और बहुत सारे कठरा भी है और नमक भी है और पन्नी ऊनि सब है बहुत अच्छे लग रहे है और अ ब्रेंच नीला कलर हुआ हुआ है और--

--और बहुत बड़ा पहाड़ है आकाश नीला पड़ रहा है और बहुत छोटे-छोटे पेड़ भी है और इ ओ माथे पे कुछ उठाए हुए है बहुत अच्छा लग रहा है।

यह झुलवे है और बगल में बहुत सारा टेंट है बहुत सारे बच्चे भी है और बगल में पो अ पोस्टर भी है और खेलने वाले बहुत सारे बच्चे सब भी है और अ झूला भी लगा हुआ है।

--और एक आदमी है जो कुछ पकड़े हुए है और एक लड़की ब्लू कलर का फ्रॉक पहनी है।